और सामने हमे यहाँ पर खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं। दीवार हमे दिखाई दे रही है।

बस खड़ी हुन दिखाई दे रही है।

जहाँ पर बेंच लगी हुई है। नीचे चेयर भी लगी हुई दिखाई दे रही है। प्लेट रखी हुई दिखाई दे रहीं है।

यहाँ पर हमें सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पर व्यक्ति दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ।

पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े पेड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।